यह किसी मंदिर के बाहर की तस्वीर है।

यह एक पार्क की तस्वीर है।

जहां पर कुछ फाउंटेन चल रहे हैं।

टेबल पर स्टील के ग्लास भी रखे नजर आ रहे हैं।